अन्य सामान भी बन रहा है ये एक रेस्टोरेंट है यहां पे पनीर टिक्का चाऊमीन बनते हुए दिख रही है।

अलग अलग जगह से लोग यहां पढ़ने के लिए आते हैं।

बाइक के स्कूटी की सर्विस होती है।

ग्रोसरी का सामान सब दिख रहा है।

मैक्सिमम कस्टमर्स यहां पे लेडिस है।

यह तस्वीर स्टेट बैंक के ए_टी_एम की है।

कपड़ों के रंग अलग अलग हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं।